तथा दूसरा एक बेंच पे बैठा हुआ है और एक को हम खड़े हुए देख सकते हैं हम इस जिम के अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं इस जिमका नाम है न्यू फिटनेस मंत्रा।

इस तस्वीर में हम एक बिल्डिंग देख सकते है जो की एक ऑफिस है। डिस्ट्रिक्ट एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज की जो की पुरुलिया में हैं।

यामाहा शोरूम में बहुत तरह-तरह के मोटरसाइकिल मिलते हैं इस दुकान के बाहर बहुत लंबी भीड़ हैं बहुत सारे पुरुष इस दुकान के बाहर भीड़ लगा के खड़े हुए--

इस तस्वीर में हम एक सफेद रंग के मकान की तस्वीर देख सकते हैं जो की एक ऑफिस है। और एह --